इस तस्वीर में अ- प्रतीत हो रहा है कि गांव का सीन है।

इस तस्वीर में देखा जा रहा है कि --

और जो ड्राई क्लीनर्स वाले हैं आ उनके हाथ में वाइट कपड़े हैं।

यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहोत सारे भोजन के अ मतलब की जो है सजावट किये हुए हैं।

इस तस्वीर में मुख्यतौर पे गार्डन दिखाया गया है जिसमे रंग बिरंगे फूल हैं।

यह तस्वीर में पेट्रोल पंप का चित्र दिखाया गया है।

ई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ये कार्यालय है।

यहाँ पे कुछ लोग अ उपस्थित हैं जो आगे की तरफ बैठे हुए हैं।

और अ पहाड़ी छेत्र में एक ब्रिज नुमा बना हुआ है। जहाँ पे चार व्यक्ति खड़े हैं एक वृद्ध हैं और --

अ देखे जा सकते है। चट्टान के ऊपर कुछ अं हरे-भरे --

यह मछली विक्रे विक्रेताओं की दुकान है।

रंग की गाड़ियां खड़ी हैं और दीवाल पे --

यह किसी स्वास्थ्य शिविर की तस्वीरें हैं जिसमें एक डॉक्टर --